न्यूबोर्न चाइल्ड केयर यानि नवजात शिशु की देखभाल सम्बन्धी स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में निम्न के बारे में सीखेंगे160 नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें एक नयी माँ के सामने आने वाली सामान्य समस्याएं और उनका समाधान कैसे करें डॉक्टर अंजली अनीता के घर में प्रवेश करती है और उसके नवजात बच्चे पर अपनी खुशी व्यक्त करती है
डॉ अंजली देखती है कि अनीता अपने बच्चे को गलत तरीके से पकडे हुए है
वह अनीता से बच्चे को पकड़ते समय सावधान रहने को कहती है
डॉ अंजली दिखाती है कि बच्चे के सर को कैसे सहारा दें और कैसे पकड़ें जब बच्चे को सीधे पकड़ना हो और जब नीचे लेटाना है
डॉक्टर अनीता को सलाह देती है कि बच्चे को कभी भी कठोरता से न पकड़ें अनीता डॉक्टर से कहती है की वह इस सब के लिए नयी है
और अपने नवजात शिशु की अच्छी देखभाल के लिए पूछती है
डॉक्टर अंजली ख़ुशी ख़ुशी सहमत होती है
वो पहली और महत्वपूर्ण बात बताती है नवजात शिशु को लेने से पहले साबुन या राख से हाथ धोएं
युवा शिशुओं में अभी तक सबल प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण नहीं हुआ है
अतः वे संक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं
अनीता डॉक्टर से पूछती है अपने बच्चे का कितनी बार भरण करना चाहिए160
डॉक्टर अनीता को बताती है कि नवजात शिशु को प्रत्येक 2 से 3 घण्टों में भरण की ज़रुरत होती है
वह बताती है कि स्तनपान बच्चे के स्वस्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है
और बच्चे के प्रतिरक्षी तंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है
और अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो बच्चे को प्रत्येक स्तन पर 10 15 मिनट तक स्तनपान करने का मौका दें
फिर अनीता डॉक्टर से फार्मूला फीडिंग यानि ऊपर से खिलाने का तरीका पूछती है
महिला डॉक्टर कहती है कि अगर आप अपने बच्चे को उदाहरण के लिए दूध के विकल्प दे रही हैं तो बच्चा एक बार में लगभग 60 90 ग्राम तक ग्रहण कर सकता है
फिर अनीता डॉक्टर से पूछती है कि वो अपने बच्चे को कब और कैसे नहलाए
डॉक्टर बताती है कि शुरूआती कुछ हफ़्तों तक बच्चा बहुत नाज़ुक होता है
वह कहती है कि वो बच्चे को तब तक गीले कपडे से पोछे जब तक गर्भनाल न निकल जाय कटा हुआ घाव न भर जाय पूरी तरह से नाभि न भर जाय
डॉक्टर बताती है कि शुरूआती दिनों के बाद हर हफ्ते 2 से 3 बार हल्के साबुन से नहलाना बच्चे के लिए पर्याप्त है
यह बच्चे के पहले साल के दौरान जारी रख सकते हैं
बार बार नहलाना त्वचा को खुष्क बना सकता है
फिर डॉ अंजली दिखाती है कि बच्चे के कुछ निशान हैं
अनीता डर जाती है
वो डॉ से पूछती है इन निशानों की देखभाल कैसे करें
डॉक्टर बताती है कि ये निशान गीले डाइपर के कारण होते हैं
आगे वह कहती है कि आपको बच्चे का कपडे का डाइपर बार बार और मल त्याग के बाद जितना जल्दी हो सके बदलना चाहिए
उस क्षेत्र को हलके साबुन और पानी से साफ़ करके सूखा करें
फिर नमी रहित रखने के लिए थोड़ा बच्चों का पाउडर लगाएं
आगे डॉक्टर बताती है कि अगर आप कपडे का डाइपर उपयोग कर रहे हैं तो आप उन्हें कीटाणुनाशक जैसे डेटॉल के साथ गर्म पानी से धोएं
यह भी अच्छा विचार है कि दिन में कुछ समय के लिए बच्चे को बिना डाइपर के रहने दें
अनीता डॉ अंजली का धन्यवाद करती है और कहती है कि वो इन बातों का ध्यान रखेगी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
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
इस ट्यूटोरियल को देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद